इस फोटो में भी सामने पूरा पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा है उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं सामने खुला मैदान खाली एरिया दिखाई दे रहा हैं जो जमीन समझमें आ रही हैं।

फोटो में एक जंगल टाइप का एरिया नज़र आ रहा है जो कि चारो तरफ से पेड़ अ हरियाली-हरियाली से घिरा हुआ है बीच में एक छोटी सी नहर है जिसमें पानी भरा हुआ है पानी वाले एरिया में ही पत्ती-पत्ती डली हुई है।

में एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जिस बिल्डिंग में जंगल सफारी अ फैमिली रेस्टोरेंट जैसे बोर्ड लगे हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर कुछ टॉवर और पिलर भी दिखाई दे रही है।